पिछे एक हरा भरा दृश्य है।

साइड में हरे भरा बहुत सारा बगीचा फूल है।

पर एक नीला रंग का घ साइन बोर्ड है।

सामने एक सोलर है और लोहा का गेट है।

ये एक कार वाशिंग सेंटर का दृश्य है।

सामने एक कोका कोला का पोस्टर भी है।

ये एक शांत और व्यवस्थित वातावरण की लगती है जहां लोग ध्यान समूह में प्रार्थना में बैठे हुए हैं।

दीवार हल्का रंग की है खिड़कियां और दरवाजा प्रकृति रोशनी प्रदान कर रहा है।

यह दृश्य एक सुंदर बगीचा का है।

ये एक बेकरी शॉप है।

असली पर व्यापार के लिए तैयार हो रहा है।

ये एक चर्च का दृश्य है यहां एक औरत माइक्रोफोन के सामने भाषण दे रही है।

ये एक शहर है जिसमें ढेर सारा बड़ा बड़ा मकान है।

ये दृश्य एक आवासीय क्षेत्र का गली का दृश्य प्रतीत होता है।

एक आगे एक साइन बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है बोटागुली उर्पण प्राइमरी हेल्थ केयर बोल के।

और शाइन बोर्ड में समय और अन्य सेवाओं का जानकारी दी गई है।

वो ब्लैक कलर का बैग एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का बैग है।

विडमेट डम्बल विभिन्न वजन में बेभज गत रूप से देखा देखा हुआ है।

ये पिक्चर एक दुनिया पिक्चर के सामने क्या है।

पीछे एक भाई का गेट दिखाई दे रहा है जिसका सुनहरा और चांदी का रंग का डिजाइन है।

खिड़की ऊपर गोलाकार आकार का डिजाइन है जो इसको और आकर्षित बनाता है।

पहले कटोरी में एक करी है दूसरी में दाल और तीसरी में सब्जी नजर आ रही है।

उनके ऊपर एक फैन है।

सड़क के किनारे दुकान या ठेला है।

सड़क में दो इंसान जा रहे हैं और दो बाइक है और एक सफेद गाड़ी है ।